इस चित्र में एक औरत दिखाई दे रही है।

इस क्षेत्र में दो रोड न जर आ रहे हैं।

और दो दुकानें नजर आ रही हैं जो बंद हैं।

एक बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है सुंदरवन नर्सरी ।

और एक किराने की दुकान है दो--

इधर स्विइंग पूल है और कुछ लोग स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं।

इसमें कुछ औरतें हैं और कुछ आदमी है।

कुर्सियां रखी हुई हैं एक पंखा लगा हुआ है सफेद कलर का छत है ओल्ड टाइल्स भी लगे हुए हैं और कुछ बलून लगे हुए हैं।

रखी हुई है और एक कार में काम हो रहा है एक लड़का काम कर रहा है।

इसमें लाल-लाल टमाटर हैं कुछ हरे टमाटर भी हैं हरी मिर्च भी रखी हुई हैं--

एक लड़की सेल्फी ले रही है।

ऊपर आ बादल हो रहे हैं इसमें एक लाइट का तार भी दिख रहा है कुछ लोग ट्रेन में बैठने जा रहे हैं एक ट्रेन खड़ी हुई है।

कुछ कुरकुरे के पैकेट टंगे हुए हैं चिप्स के पैकेट टंगे हुए हैं कैंडीज रखी हुई हैं।

लिखा हुआ है सामने एक पानी का वाटर ।

एक कॉलेज नजर आ रहा है कुछ बस भी दिखाई दे रहे हैं।

इस क्षेत्र में जंगल का--

एक शोरूम नजर आ रहा है सामने एक ऑटो खड़ा हुआ है।

तीन आदमी बाहर खड़े हुए हैं एक छोटा बच्चा भी खड़ा हुआ है इस दुकान में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं।

एक कार आगे खड़ी है एक पीछे खड़ी है और दो--

इस चित्र में एक दुकान नजर आ रही है जहां--

कुछ गोल्डन कलर के हैं कुछ सिल्वर कलर के हैं।

और एक औरत बैठी हुई है पीछे घास भी है एक बच्चा बाहर खड़ा हुआ है औरत कुर्सी पर बैठी हुई है एक टेबल रखा है।

सब लोगो ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

एक गाड़ी वाला जा रहा है एक कार खड़ी हुई है।